औरतें भी हैं और मिट्टी भी है पत्थर भी हैं छोटे छोटे।

यहाँ पर मुझे एक एरिया दिख रहा है जहाँ पर मुझे मछलियां दिख रही है और मछलियां मरी हुई दिख रही है और यहाँ पर उनका खून भी दिख रहा --

और एक नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और एक नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

बड़ी-बड़ी मछलियां कुछ कटी हुई मछलियां --

अ बिल्डिंग टाइप की है और यहां पर पुल भी दिख रहा है।

कुछ करके जनरल स्टोर यहाँ पे दिख रहा है।

और आदमी गुफा के बाहर है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है।

जहां पे बिल्डिंग में रेड कलर का बॉडर भी लगा हुआ हैं।

के पीछे पेड़ भी है और खुल्ला एरिया भी है।

और यहाँ डस्टबीन भी है और एक छोटा सा पोस्ट --

यहाँ पर मुझे एक फर्श दिख रहा है।

और यह बहोत ही खुल्ला एरिया है।

यहाँ पर मुझे एक एरिया दिख रहा है जहां पर बहुत बड़ा फर्श है और यहाँ पर बड़े-बड़े --

वायर भी लगी हुई है एक लैडर भी गिरी हुई है।

साथ में पोस्टर भी लगे हुए हैं और बहुत बड़ा गेट है गेट में होटल का नाम लिखा हुआ है जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ है बहुत सारे लोग --

अह वो परांदे वगैरा रखे हुए हैं टेबल है कुर्सियां है और यहां पर एक भी आदमी नहीं है कोई भी सेल्समैन नहीं है यहां पर कोई भी कस्टमर नहीं है कोई भी स्कैनर कुछ--

यहां पर कुछ चर्चा चली हुई है एक कुर्सी यहां पर खाली है बाकी कुर्सियां यहां पर भरी हुई है।

यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे लोग हैं और यहां पर कन्फ्यूज करने।

और यहां पर बहोत सारा सामान है एल_ई_डी है आदमी है।

यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है।

और यहाँ पर पूजा का सामान भी हैऔर किचन का सामान भी है।

और टीप लिप टन वाली और लो भी है और सब कुछ --

जो इसका दीदार कर रहे हैं यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ है और यहां पर बहुत बड़ा एरिया है यहां पर लोग फोटोस वगैरह खी--

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है। जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए है जो योगा कर रहे हैं। अपने ध्यान में--

लुफ्त हो चुके हैं और कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कुछ लोग अपने ध्यान में बैठे हुए हैं कुछ लोग--

और यहां से दो तीन लोग भी चल रहे हैं।

कुछ करके मेंशन हुआ है और यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी पहाड़ियां हैं।

जहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क भी है और यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग हैं जो झूला झूल रहे हैं।

और यहाँ पर एक ऑफिस भी है जहाँ पर एक मेडिकल स्टोर भी है जहाँ पर बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है।